एवं दिखने को मिल रहिया है तिन चार मंजिला दिखाय दे रही है और बजा नगाड़ा रहा है

खिडकिया भी दिख --